टेबल है कुर्सियाँ हैं पेड़-पौधे हैं।

है ये एक गेरिज है इसमे एक मैकेनिक गाड़ी को ठीक कर रहा है जिसके चक्का निकल गया है।

बच्चे खेल रहे है इसमें एक गोला गोला कुछ रखा है नीचे एक घर है घास है।